जैसा की आप देख सकते हैं यहाँ पे एक घर बनाने का कार्य चल रहा है यहाँ पे मिस्त्री भी है लेबर भी है बड़े एरिया में घर बनाने का कार्य चल रहा है ।

जैसा की आप देख सकते है यहाँ पे चारो तरफ घर ही घर है घर के ऊपर छत भी है जो की लोग अपने-अपने छतो में जाते हैं और अपने-अपने छतो में घूमते भी है यहाँ का नजारा बहुत ही बढ़िया है।